मॉल छै दु गो सीढ़ी छै नीचा में कारपेट छै एगो लड़का खड़ा छै लड़का लाल रंग के टी-शर्ट पिन्हले छै दु गो आदमी छै।

एगो आदमी बैठल छै एगो आदमी पीला रंग के टीशर्ट पिहिन्ले छै एगो आदमी कुर्सी पर बैठल छै पीर पीरका रंग के ड्रेस छै बोर्ड पर पीरका रंग के बोल जेल रहल छै हरी हरीअरका रंग के ड्रेस छै।

घर छे खपरा के घर छे। नीला आकाश छे। गाछ छे। आदमी छे आदमी झुकल छे।

सीसा लागल छै सीसा म ग्रील लागल छै हरीयरका रंग के ग्रील छै उजरा रंग के बल्ब छै।

रोड छे। रोड के बगल में एगो मकान छे। मकान नै रंगल छे। एगो झोपड़ी छे। एगो लेडिज छे एगो बाल्टी छे बोरा रखल छे बबुलुका रंग के खिड़की छे।

लालका रंग का झंडा छे पीलका रंग का झंडा छे मकान छे नीला कार छे कांच पीला के छे टावर छे जंगल छे झंडा लागल छे खिड़की लागल छे खिड़की में ग्रील लागल छे शीसा लाग--

उजरा रंग के गाडी छे। बम्पर लागल छे। मोटरसाईकल छे दुगो। एने फूल लागल छे। एगो बच्चा खा रह छे। बगल में डोल छे टायर छे केला के गाछ छे। एगो गाछ छे सुखल छे। ऊपर में आकश छे |

मूर्ति के पीछा में फूल बनल छे। ओने आदमी छे। आदमी करिका रंग के जैकेट पिहनने छे। एगो शर्ट पिहनने छे।